लड़कों के पीछे एक चेयर रखी हुई है और नीचे ग्ग्रा वाला मैट है।

चॉकलेट केक है। इसके किनारे पर औरीओ लगा रखा है। काफी सारी चॉकलेटस इसपे गार्निशिंग की हुई है।